बहोत सी महिलाएं बैठकर योगा करती दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बहुत से लोग मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं ।

सामने काँच दिखाई दे रहा है।

आसपास बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

आसपास बहुत सारी जीमे दिखाई दे रही--

चित्र में मानसरोवर स्टेशनरी दिखाई दे रही हैं।

पीछे के तरफ भी धूप बहोत तेज नजर आ रही --

वो तो हाँ सुन्दर लग रही --

एण्ड टाउन जैसे दो केक नजर आ रहे हैं।

पीछे नीला रंग का जो हरे-भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सारी गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं। पीछे कचड़े भी पड़ा दिखाई दे रहा है। --